यह नदी में बोहोत बड़े- बड़े हमें पत्थर भी दिखाई दे रहे है | ये जो नदी है इसके पास एक आपको बड़ी सी मीनार दिख री है आपको बड़े-बड़े पहाड़े यहाँ दिख री हैं और पहाड़ो के ऊपर बड़े- बड़े पौधे यहाँ दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हम देख सकते हैं इस इमेज में कुछ प्लम्बर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर हमें छत डालते हुए नज़र आ रहें हैं।

इस इमेज में हमें एक चर्च की फ़ोटो दी गई है | आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चर्च बना है जिसे काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर बैलून लाइट्स इन डेकोरेट किया गया है।

इस इमेज में हमें डांस क्लास की पिक्चर दी गई है आप देख सकते है ये जो डांस क्लास में जो है यह अलग अलग कलर से पेंटिंग बनाई गई है यहां --

पे एक रजिस्टर रखा है। एक पेन रखा हुआ है और दाया यहाँ पे दो डॉक्टर्स खड़े हैं जो जिन्होंने माक्स लगा के रखे हैं। ये एक दुसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें डस्टबीन भी दिखाई --